एक होटेल का दृश्य है जहाँ पर बहुत सारे टेबल कुर्सी रखे है लोग खाना खाने आये है यहाँ की लाइटनिंग बहुत सुंदर है यहाँ पास वेटर घूम रहे है यह दृश्य बहुत ज्यादा अच्छा है यहाँ पास ए.सी. है लाइट है लोग है और बहुत तरह - तरह के व्यंजन भी हैं ।

यह एक शादी का घर दिख रहा है बहुत लाइटिंग हुई है यहाँ पस एक आदमी स्कूटी के साथ है अँधेरा है लाइट जल रही है बहुत सुंदर नज़ारा है इतना सुंदर दिख रहा है पूरी शादी के लिए तैयारी हो चुकी है लोग तो यहाँ कोई भी नहीं है फिर भी--

ये दृश्य से पता चल रहा है कि कानपुर की जगह है यहाँ पास बहुत सारे दुकाने हैं पत्ते हैं अम रोड है साईकल खड़ी है बाइक खड़ी है कोई शो शॉप भी है जहाँ लिखा है ऑटोमोबाइल्स यहाँ पास पेड़ -पौधे भी हैं।